यहाँ बदमाश सारे खाने के सामान दिखाई पड़ रहै है जो बेहद ही खाने में स्वादिष्ट होते हैं।

यहाँ पर कई फूलों व कई मोर पंखों से यह सजा हुआ है।